इस तस्वीर को ऊपर से लिया गया है किसी ऊपर किसी इमारत से लिया गया है।

इस तस्वीर में एक घर का निर्माण हो रहा है काफी सारे मजदूर काम कर रहे हैं।

तथा दूसरे मंजिल की तैयारी हो रही हैं।

इन लोग घर के गेट को रंगाने की तैयारी कर रहे हैं।

एक व्यक्ति स्टूल पे बैठा कलर लग रहा है। दो लोग --

यहां पर फेडरल बैंक की एक ए_टी_एम है।

ए_टी_एम के सामने एक लड़का ए_टी_एम की तस्वीर ले रहा है।

इस ए_टी_एम के सामने तीन गमले रखे है।

एक मंजिल को सहारा देते हुए --

यह एक विश्वविद्यालय की तस्वीर है।

विद्यालय के बाहर काफी सारे नारियल के पेड़ लगे हुए हैं।

यह विश्वविद्यालय काफी बड़ा है बाहर काफी हरियाली है।

सामान मिल रहे हैं हर सामान पंद्रह रुपया प्रति --

यहां पर का रात का टाइम है।

उन दोनों की तस्वीर लगी है बहोत ही सुंदर दृश्य है बहोत सारे फूल लगे हैं।

यह तस्वीर एक जिम के अंदर की है जिसमें एक लड़का खड़ा है और अपनी सेल्फी ले रहा है।

नीले रंग की उसने टी_शर्ट पहनी है और काले रंग की पैंट पहनी है। उसके पीछे कई तरह के जिम उपकरण जैसे डंबल बेंच और मशीन दिख रही है।

यह तस्वीर एक बैंक की इमारत को दिखाती है जिसका नाम इलाहाबाद बैंक है।

बैंक के बोर्ड पर अवध शाखा लिखा हुआ है।

इमारत के निचले हिस्से में एक ए_टी_एम भी है।

इमारत के बाहर कुछ लोग खड़े हैं।

और दो साइकिल भी खड़ी एक व्यक्ति जमीन पर बैठ कर कुछ कर रहा है ये दृश्य एक छोटे शहर या ग्रामीण क्षेत्र --

यह तस्वीर एक भव्य पुरानी इमारत की है जिसकी वास्तु कला पुरानी शैली की इमारत के ऊपर लाल रंग के--

कुछ लोगों ने चेहरे पर मास्क भी पहन रखा है।

ये तस्वीर किसी सामग्री के वितरण या भंडारण से संबंधित --

एक व्यक्ति अपनी तस्वीर ले रहा है उसने नीले कलर की शर्ट पहन रखी है।

के हाथ में दोनों हाथों से पकड़ रखा है।

यह तस्वीर किसी बस स्टैंड या बस स्टेशन के अंदर की लग रही है।

महिला जमीन पर बैठे हुए अपने सामान के साथ दिख रही है।

चारो ओर रोशनी की व्यवस्था है यह तस्वीर रात के समय की लग रही है।

इसमें एक सड़क और उसके आस पास हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं।

तो में फसल लगी हुई हैं और कुछ जगहों पर पानी भी भरा हुआ है दूर पहाड़ियां--

यह तस्वीर एक जिम के अंदर की है।

इनकी दीवारों का रंग लाल और हर है और पीछे कुछ जिम के --

भी दिखाई दे रहे हैं यह एक दोस्ताना या व्यावसायिक माहौल का दृश्य प्रतीत होता है।

को के साथ रंग बिरंगे पारंपरिक पोशाकों में नृत्य का प्रदर्शन कर रहे हैं।

ये हाथों में कुछ पत्तियां या पंखे जैसी चीजे है।

घास का मैदान किसी खेल के मैदान जैसे लग रहा है।

इस तस्वीर में एक बड़ा जहाज दिखाया गया है।

उसके पास एक छोटी सी नाव भी दिख रही है।

ये जहाज बहोत बड़ा है दो मंजिला और चौड़ी--

इसमें ऊपर की ओर रेलिंग लगी है।

यह तस्वीर केरला होटल नाम के एक शाकाहारी और मांसाहारी रेस्टोरेंट को दिखाती है।

होटल के बाहर कुछ लोग खडे है और सामने एक मोटरसाइकिल और साइकिल भी खड़ी है।

यह तस्वीर एक कारखाने या फैक्ट्री की लग रही है जहां लोग उत्पादन का काम कर रहे हैं तस्वीर के बीच में एक व्यक्ति बैठा है जिसमें नीली टोपी हल्की नीले रंग की जैकेट और स्वेटर पहेना हुआ है।

वह एक मशीन पर काम कर रहा--

उसके सामने बड़ी नीले रंग की प्लास्टिक की कैरेट रखी है।

पीछे की तरफ लोग काम करते हुए दिख रहे हैं।

यह तस्वीर एक रेलवे स्टेशन की है जिसमें एक हरी और पीले रंग की --

ट्रेन खड़ी है तस्वीर में ट्रेन के सामने से पटरिया दिखाई दे रही है।

फुट ओवर ब्रिज भी दिखाई दे रहा है आसमान में बादल छाए हुए हैं।

यह किसी यात्रा या स्टेशन पर इंतजार के पल का दृश्य लगता --

यह एक व्यस्त भारतीय सड़क का दृश्य है तस्वीर के केंद्र में एक भव्य पीले और नारंगी रंग का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है।

संभवत किसी मंदिर या उत्सव के लिए बनाया गया --

परवेश द्वार के ऊपर जयपुर आजपूर लिखा हुआ है।

यह तस्वीर किसी शादी की बाहर से सजावट की तस्वीर है।

सुंदर सुंदर फूलों से सजावट की --

यह तस्वीर कुछ दोस्तों या समूह को दिखाती है जो एक जंगल या घने पेड़ पौधे वाले क्षेत्र में --

ट्रैकिंग कर रहे हैं वे एक कतार में चल रहे हैं सभी ने बैक पैक पहने हुए हैं।

यह क्रिसमस समारोह की तस्वीर है इसमें एक मंच पर कुछ लोग खड़े हैं।

मंच के बीच में एक व्यक्ति मेज पर बैठा है।

ऐसा लगता है किसी स्कूल में आयो --

तस्वीर मे उसके बाल कटे हुए दिखाई दे रहे हैं।

उस साइड में कुछ खास तरह का डिजाइन भी बना हुआ है।

इसमें कुछ शैंपू और क्रीम की बोतल भी रखी हुई है।

यह तस्वीर किसी एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल की लग रही है।

यह किसी हटेल के खाने शाम के अंदर के तस्वीर है इस तस्वीर में एक कड़ाही के उ --

इस थाली के ऊपर छोटी छोटी गरम जलेबियां रखी हुई है।

यह तस्वीर एक बाल दाढ़ी स्पा या सैलून नाम की दुकान की है दुकान का बोर्ड लाल रंग का है उसपर सफेद और नीले अक्षरों में नाम लिखा हुआ है।

व्यक्ति दुकान के बाहर सीढ़ियों पर खड़ा है दुकान के शीशे के दरवाजे पर।

इस तस्वीर को ऊपर से खींचा गया है शायद किसी बिल्डिंग या बालकनी से इसमें एक बहुत ही --

सलीखे से पनाड़ सजाया गया नीचा दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर एक रंगीन और सुंदर हिन्दू मंदिर के प्रवेश द्वार--

और चमकीले रंगों से सजाई गई मंदिर के दीवारें और स्तंभ पर भी विभिन्न डिजाइन और पैटर्न बनाए गए हैं।

यह तस्वीर रात के समय एक पार्क या सार्वजनिक उद्यान की है।

तस्वीर में रोशनी से जगमगाते पेड़ों और फब्बारों के कारण एक शांत और मनोरम दृश्य बन रहा --

यह तस्वीर एक निर्माण स्थल की है जहाँ कुछ मजदूर एक छत पर काम कर रहे हैं वे छत पर सीमेंट या कंकरीट बिछा रहे हैं।

के आस पास हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर किसी स्कूल में क्रिसमस समारोह को दर्शा रही है।

उन्होंने क्रिसमस की टोपियां भी पहनी हुई है।

यह तस्वीर एक पुरानी दो मंजिला इमारत की है जो देखने मे जर्जर लग रही है।

इमारत का रंग हल्का गुलाबी और सफेद है जो कई जगहों पर उखड़ा हुआ--

इसमें कहीं खिड़कियां और बालकनी हैं सामने खुला मैदान या प्रांगन हैं।

पक्का किया हुआ है इमारत के पास पेड़ खड़े हैं इस पर कुछ --

इस इमारत में छोटी छोटी खिड़कियां लगी है।

तसवीर एक निर्माण स्थल की है यहाँ तीन लोग काम कर रहे है एक व्यक्ति लाल रंग की टी शर्ट पहने हुए नीचे गद्दे में खड़ा है।

यह तस्वीर एक किताब की दुकान या पुस्तकालय के अंदर की है यहां कई किताब अलमारियों में सजी हुई है तस्वीर में इंजीनियरिंग --

ए_पी जेनको जैसे बोर्ड दिखाई दे रहें--

इसिया पता चलता है कि यह इंजीनियरिंग और प्रतियोगिक परीक्षाओं से --

ये एक स्कूल के बाहर की तस्वीर है इस इस तस्वीर में --

वो कुर्सियां रखी है बोर्ड लगे हैं स्वामी विवेकानंद जी की एक बड़ी सी तस्वीर है।

यहां पर गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है यहां पर --

यहां पर गणेश जी की बड़ी सी प्रतिमा रखी है।

यह एक फैक्ट्री की तस्वीर है।

यहा पर बोहोत सारे मजदूर काम कर रहे हैं यहां पर सामान --

सामान को ऊपर तक पहुंचाने का काम हो रहा है।

यह तस्वीर एक निर्माण स्थल की है इसमें एक खुदाई करने वाली मशीन दिख रही--

जो जमीन खोद रहे हैं पास में कुछ सीमेंट के खंबे और पाइप पड़े हुए --

पृष्ठभूमि में मिट्टी के मिट्टी का एक बड़ा ढेर है और एक नीले रंग का --

कंटेनर भी पर रखा है जिस पर कमला लिखा हुआ है यह तस्वीर किसी प्रकार के निर्माण या --

यह तस्वीर रात के समय एक छोटे से चर्च या प्रार्थना की --

कार का बोनट खुला हुआ है और एक मैकेनिक इंजन की जांच कर रहा है।

यह दृश्य किसी कार वर्कशॉप या गैरेज का है जहां गाड़ी को सर्विसिंग या मरम्मत का काम चल रहा हो।

यह रात के समय एक हरे मैदान की तस्वीर है इस मैदान के सामने एक --

लम्बी सी ईमारत है जिसके सामने एक बड़ी सी --